सोनोग्राफी का काम भी होता हुआ नजर आ रहा--

का डेकोरेशन बहोत अच्छे से किया गया है।

में मुझे एक फैमिली रेस्टोरेंट नजर--

मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है।

एक बहोत बड़ी शिप चलते हुए--

लगी हुई नजर आ रही है यह--